और यहां पर ग्रील सी लग रही है सारी तरफ।

और धरी है यहां पर पैक --

ग्रिल सी लग रही है और यहां पे पेड़ पौधे हैं।

बहुत बरबर में एक आदमी--

यहां पर पीछे एक स्टार सा बना उसमें मूर्ति सी बनी--

और यहां पर पेड़ पौधे हैं और यहां पर गेट खुला है।

यहां पर बहुत अच्छा सा जगह--

और आगे यहां पर काउंटर सा बना है और यहां पर पंखा लग रहा है।

और यहां पर पंखा लग रहा है और यहां पर पीले से कलर का कलर हो रहा है।

और सोफे पढ़े और एक टेबल और बेड पड़ा है।

यहां पर सब्जी सी की मंडी है और यहां पर हरा धनिया है।